अपना काम काफी तरह अच्छे से कर रहे हैं।

अगल-बगल पहाड़ी की तरफ बालू की तरह दिख रहा है और नाव भी है इस पार से उस पार जाने के लिए।

वो भी फसल काफी सुन्दर है। देखने में अच्छा लग रहा है।

और रक्षाबंधन के लिए --

जगह है मतलब एक मैडम हैं जो भाषण दे रहीं हैं।

एक पार्क के अन्दर एक गोल-गोल सा है।